ब्लू है और इसमें आसमान का कलर ग्रे दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पौधे जो ग्रीन और ग्रे कलर के है।

जमीन के कलर ग्रे है और पेड़ पौधे ग्रीन कलर के है और इसमें --

विडिओ मे मुझे एक गार्डन दिख रहा है जो ग्रे कलर की है और उसमे बॉउन्ड्री भी है बड़ा सा जो--

समाने जो रंगबिरंगी है रेड है ग्रीन है बदामी कलर --

इस इमेज में मुझे एक मॉल घर दिख रहा है जो वाइट कलर का है और जो जमींन--

यह इमेज में मुझे उस पेड़-पौधे दिख रहे है जो ग्रीन ग्रे और रेड कलर के है।

इस इमेज में हमे समुन्द्र का पानी दिख रहा है और इसमें कुछ नांव दिख रही है जो वाइट कलर की है और येलो कलर की है और --

इस इमेज में मुझे ईंट और सीमेंट का बनता हुआ घर दिखाई दे रहा है सीमेंट का कलर ग्रे कलर का है और कुछ --

इस इमेज में हमे पानी में चलता हुआ बस और लोग नज़र आ रहे है बस का कलर ब्लू --

सारे कार का कलर वाइट उसके शीशा का कलर ब्लैक और सामने एक घर है जो रेड और येलो कलर की है।

यहाँ की कलर ब्लैक है और उसमे पानी का कलर ग्रे और वाइट मे--

पिंक कलर की नज़र आ रही हैं और आस क मान का कलर ग्रे और ब्लू --

सामने एक आदमी है उसके बगल में एक चेयर है चेयर का कलर रेड है और आदमी ब्लू कलर --

इस इमेज में हमे एक --